एक पर्दा येलो कलर का भी है छत रेड कलर की--

मंदिर के बगल में एक मकान भी बना हुआ है।

इसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ भी लग रहे हैं।

के ऊपर व्हाइट कलर की धारी से पेंट है और चारों तरफ रेलिंग भी लगी हुई है कई आदमी यहां पे खड़े हुए हैं।

कि तरफ एक सा मकान बना हुआ है जो की रेड और वाइट कलर से पेंट है उसके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है।

लड़के ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

ये सी_पी_यू रखा हुआ है माउस रखा हुआ है एक मोबाइल भी रखा हुआ है।

वह बिल्कुल चमक रही है इसकी तरफ एक राउंड बना हुआ है जो कि रेड कलर का है।

पोस्टर भी लगा हुआ है और उ टी और ऊपर टीन भी लगी हुई है सामने जीना दिख रहा--

रेड कलर से पेंट है यहां पे दो पिलर भी हैं और दो आदमी खड़े हुए एक कुत्ता बैठा हुआ है।

और दूर मैदान भी दिख रहा है जहां पे घास लगी हुई है।

सामने जीना भी दिख रहा है और एक पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उसी के बगल में एक बड़ा सा राउंड सा कोउ अ इमारत बनी हुई है।

सामने बहुत खंबे लगा हुआ हैं।

यहां पर बांस दिख रहा है पाइप दिख रही हैं।

बोर्ड की तरफ बड़े बड़े मकान भी बने हुए हैं।

टॉय मे बच्चों की पानी की बोतल भी रखी हुई है।

और बगल में बहोत से आदमी खड़े हुए हैं और यहां टीन छाई हुई है।

ये एक आइसक्रीम दिख रहा है जो की एक कटोरी मे है और एक प्लेट दिख रही है प्लेट पर ब्लू और येलो कलर की भी एक लाइन बनी हुई है।

एक में एक औरत और एक बच्ची भी खड़े हुए हैं यहां पे खूब हरी हरी घास भी हैं।

सर ने एक एक बड़ी किताबें रखी हैं।

एक प्लेटफार्म दिख रहा है यहां पे ट्रेन खड़ी है।

यहां पर फूल से फूलों से सजावट है फूलों की लई लगी हुई है।

सामने एक लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के ही पास चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो की व्हाइट कलर से पेंट हैं।

व्हाइट कलर का अमाचा पड़ा हुआ है एक मोबइल भीं देख सकते है एक स्प्रे की बोतल भीं रखी हुई है।

चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है।

झोला और पन हरी कलर की पन्नी देखने को मिल रही--

यह एक रिक्शे वाला रिक्शा दिख रहा है रिक्शे में कई कलर हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

और इसी के बगल में एक खराब सामान रखा हुआ है यहां पे बहुत सी कारें भी पड़ी हुई हैं।

मिट्टी पड़ी हुई ईटा भी एक पड़ा हुआ है पानी पड़ा हुआ है और एक बेल्चा भी पड़ा हुआ है।

बगल में बहुत सी रेक भी बनी हुई है।

उसी के सामने एक बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ है और दो बाइक भी खड़ी हुई--

नदी के किनारे किनारे रेलिंग लगी हुई है और एक सड़ और सड़क भी दिख रही है।

ये एक प्रकार से स्टोर लग रहा है जोकि बाहर की तरफ रेड कलर से पेंट है।

एक गेट के पास एक कुर्सी रखी है उसके बाद एक आदमी खड़ा है।

यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है उसी के सामने एक गोल राउंड सा जाली का गुंबद बना हुआ है।

इसी के बगल में एक पोस्टर रखा हुआ हैं।